सफेद कलर से रीता मैकअप आर्टिस्ट सैलून लिखा हुआ है नीचे नौ नंबर लिखे हैं और --

ये चाबी है महिला लाल साड़ी पहने हुए हैं पीछे एक नीली शटर है जिसके--

सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जिसमें ऊपर लाल पोस्टर लगा है जिसमें --

सामने बहुत सारी बेंच दिख रही हैं जिन पर बड़े बड़े रंगीन पेपर रखे हुए हैं पीछे बहुत सारे --

लाल कलर की है और ऊपर पीले कलर की उल बाल उ दीवाल के उस साइड बहुत से पेड़ और बिल्डिंग दिख रही हैं जो सफेद और ब्लैक एंड वाइट दिख रहे हैं।

पानी की बड़ी काली टंकी रखी हुई है पीछे बहुत से बड़े पेड़ --

सामने दूर एक सफेद मंदिर दिख रहा है ऊपर आसमान सफेद और ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है सड़क है जो बीच में पिंक कलर की दिख रही है और किनारों पर --

पीली दिख रही है दोनों साइड किनारों पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और--

कुछ छोटे कुछ बड़े पेड़ हैं और सामने कुछ लाल फूल वाले पेड़ लगे हैं और --

कत्थई कलर की बहुत सारे झालर लगे --

कलर की है एक गोल फब्बारा बना हुआ है बाहर बहुत से पेड़े दिख रहे हैं ऊपर नि सफेद आसमान दिख रहा है।

लगे हुए हैं ऊपर बहुत सारी लाइट लगी हुई है ऊपर नीला और काला आसमान दिख रहा है नीचे बहुत सारे आदमी --

हीीी पिंक और ग्रीन बुक दिख रही है और सामने एक आदमी खड़ा हुआ है स बड़ा सा पोस्टर लगा है जो सफेद कलर का है जिस पर कुछ --

गेट है और एक आदमी खड़ा है ऊपर छत--

ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है नीचे बहुत से आदमी है। सड़क पूरी ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है और --

दुकान में नीचे सक सफेद और कत्थई कलर है नीचे फर्स का--

ब्लैक कलर सी_डी सी_डी_वी प्लेयर रिपोर्ट लिखा हुआ है और भी बहुत कुछ अंदर दिख रहा --

लिखा हुआ है और भी बहोत कुछ लिखा है नी नीचे--

फूलगोभी हरीमिर्च और एक महिला बैठी हुई है जो मिर्च--

तौल रही है आलू रखे हैं गोभी दिख रही है और भी साइड में दुकाने दिख रही है जिनपे महिलाएं और कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और सामने भी कुछ महिला--

ऊपर एक काला पोस्टर है जिसमें से सफेद कलर से द सिटी लिखा हुआ है और--

अंदर दो आदमी खड़े हुए हैं पीछे कुर्सियाँ बनी हुई हैं ऊपर रंगीन लाइट दिख रही --

दिख रहे हैं सामने एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई है और --

तेल की कुप्पी है और साइड में एक पाउच और एक कुप्पी छपी हुई है नीचे--

में एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जो अंदर सफेद कलर की है और बाहर के खंबे कत्थाई बने हुए हैं ऊपर चॉकलेटी कलर की डिजाइन है बाहर बहुत सारी सीढ़ियाँ --

ट्रैक्टर और कार मोटरसाइकिल खड़े हुए हैं और सामने खंबा है ऊपर नीला सफेद आसमा --

हैं दिख रही है जो नीले कलर की हैं बहुत से आदमी ही ओ नीचे कुछ --

क्रीम कलर की है जिस पर काले कलर से ईट --

इस और न लिखा हुआ है और दूध फोटो लगी हुईं हैं और सामने की दीवाल --

क्रीम कलर की है जिसमें ऊपर काँच लगा है और अंदर सफेद दीवाल दिख रही --

कुछ लिखा हुआ है पीछे दीवाल सफेद कलर की है ऊपर ट्यूबलाइट लगी हुई --

ही ऊपर झालर लगी हुईं है ये पीले --

आ मूर्ति बनी हुई है नीचे कुछ फल रखे हुए हैं।